और पहाड़ों पे लोगों को घुमने जाना अच्छा लगता है।

बोहोत सारे बच्चें यहां पर रोज आते हैं खेलते हैं। सुबह के समय लोग यहां पर टहलने भी आते हैं।

यह खरगोश है और खरगोश देखने में बहोत ही सुंदर होता है यह बहुत तेज दौड़ता हैं ।

यहां पे हमें तरह-तरह के टायर देखने को मिलते हैं । यहां से टायरों को हम खरीदते है ।